मुझे इस चित्र में एक रास्ता दिखाई दे रहा है यह रास्ता एक इमारत की तरफ जा रहा है।

एक ऑफिस दिखाई दे रही है इस ऑफिस में एक लंबी टेबल लगी हुई है इस टेबल के--

मुझे इस फोटो में एक गैरेज दिखाई दे रहा--

फॉर्च्यूनर कार खड़ी है इस कार का कलर सफेद है।

मुझे इस फोटो में एक बहती हुई नदी दिखाई दे रही है।

एक दुकान दिखाई दे रही हैं। इस दुकान के अंदर--

मुझे इस फोटो में एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस बिल्डिंग के आगे एक बड़ा गेट लगा है यह गेट काले कलर का है और इस बिल्डिंग का कलर --